और यहां पे है खेलने के लिए नीचे ग्राउंड भी है जो यहां पे--

जो यहां पे और यहां पे बहोत सारे--

गए हैं और चाहते हैं छोटी सी जगह यहां पे जो हरियाली है और एक डस्टबिन है जो यहां पे रखा गया है स्टील का दिखा--

और यहां पे फैन भी है जो चालू है और यहां पे लाइटिंग है जो चालू है लाइटिंग और यहां पे सब चीज--

ग्रीन कलर के है और यहां पे दिन का उजा--

बहोत सारे वहां बैठने के लिए चेयर रखा गया है काले कलर कि रास्ता है जाने के लिए--

उधर पे एक चेयर है और यहाँ पे वॉल नजर आ रहा है और ये और यहाँ पे लिखा गया हैं।

यहां पे कमल का फुल भी ले के ठहरे हुए हैं और यहां पे मंडप पाड़ा गया बड़ा। यहां पे लोग है जो वीडियो कर रहे। यहां पे बहोत सारे लोग बैठे है।

पानी में ठहरा हुए हैं यहां रास्ता में आने के लिए झाड़ है यहां पे बहुत सारा--

लगाया गया एक यहां पे एक दरवाजा है जो खुला हुआ है जाने के लिए है।

बीस यहाँ पे घड़ी भी है और यहाँ पे लिखा है नो एक्सचेंज नो रिटर्न फॉर एनी थिंक करके लिखा है और यहाँ पे एसी है व्हाइट कलर के चालु --

जो यहां पे लाल है व्हाइट है पीले हैं।

यहां पे है टेरिस जो यहां पे बड़ी सी है और यहां पे--